है यह दुकान रिटेल और होलसेल दोनों में--

है यह देखने में बहोत--

इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा--

थे और यह एक तरह--

ही ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है।

इस इमेज में मुझे एक--

अलग डिजाइन और फूलों की माला टंगी हुई दिख रही--

हैं यह देखने में बहोत ही ज़्यादा बड़ी लग --

काम कर रहे हैं यह देखने में--

नहा है जिस पर बहोत सारे--

है यहां पर डेरी का सारा सामान मिलता है।

पर बहोत सारे लोग देख रहे--

सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा--

बहोत बड़ा झरना बहते हुए नजर--

थे। जिसमें बोहोत सारे बच्चे बैठकर टी_वी देख रहे थे।